इसमें कोई बैठा है अभी और वो कुछ चेक कर रहा है अभी बट जो इको-स्पोर्ट है उसकी अल्मोस्ट हो चुकी है और वो बाहर आने के लिए रेडी है।

प्लास्तर बाकी है सिर्फ ईंटों की चुनाई की गई है ईंटें खड़ी करके दीवारें खड़ी की गई है और --

इसमें मौसम बहोत ही सुहाना दिख रहा है और दो रेजिडेंसी बिल्डिंग देखी जा सकती है।